यह एक खेलने का मैदान है और खेलना हमारे लिए बहुत बेहतर चीज़ है। स्वस्थ को भी बनाए रखता है खेलना जैसे फुटबाल भी इस मैदान में खेल सकते हैं बैडमिंटन रनिंग भी इस मैदान में कर सकते हैं। ये रनिंग के लिए और बेहतर मैदान है और क्रिकेट के लिए तो और अच्छा ही है फुटबॉल के लिए भी बहुत बेहतरीन मैदान है।

बाइसेप्स भी बना सकते हैं।

और हॉस्पिटल के डॉक्टर का नाम है डॉक्टर संजय कुमार।

यहाँ चौबीसो घंटे सेवाएं मेडिसिन उपलब्ध रहता है और स्पीकर --

इस आई.आई.टी. में दो प्रकार का आई.आई.टी. होता है। एक सीटर आई.आई.टी. हो --

साथ ही साथ कॉपी कलम भी बुलाते है ।

इस स्कॉर्पियो में कुछ खराबी है इसीलिए रिपेयरिंग --

ये गर्मी के दिन मे एन्जॉय लेने में बहुत अच्छा लगता है इस समय एन्जॉय लेने में।

और यहाँ के वर्कर्स और मालिक फोटो खिंचवाते हुए इस --